काफी ये डांस कर रहे हैं ये बच्चे --

की शॉप है। फूलों की दुकान लगा के रखी है काफी बड़े खूबसूरत बोहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

एक लड़की एक लेडीज है जो ब्लैक सूट पहने हुए है। उसके पास एक लड़का खड़ा है येलो टी-शर्ट में। दो लड़कियां बेठी हुई हैं। एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर नीचे पहाड़ हैं सारे --

खड़े हैं जोकि घर के घर के या कुछ ऐसा बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं। ऊपर च अ खिड़की लगी हुई है।

ए- एक लेडीस है जो स्टेज पर खड़ी है आगे माइक लगा हुआ है माइक में कुछ बोल रहीं हैं वे हाथ एक हाथ ऊपर उठा हुआ है।